दो ट्रेडमिल दिखाई दे रही हैं जो एक्सरसाइज के लिए काम आती हैं। इस जिम के छतो में लाइट लगी हुई है और एक लड़का बैठे एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहा है।

जो अ पैनल लगाके पीवीसी पैनल लगाके छत बनाई जाती है उस तरीक़े से यह लोग छत को बना रहे--

आ रखी नज़र आ रही है। एक कॉफ़ी में एक चाय स्पून रखा हुआ है। दूसरा स्पून नीचें की तरफ़ है और एक --

बजुर्ग आदमी खड़ा है और दूसरी तरफ दो तोते बैठे हुए हैं जोकि बहोत ही सुन्दर कलर में है पीले और नीले।